यह एक यह एक बहुत बड़ा ग्राउंड हैं जिसमे कुछ बच्चे खेल रहे हैंऔर इसके पीछे बिल्डिंग बनी हुई हैं।

यहाँ पर एक पार्किंग हैं जिसमे एक कार खड़ी हुई हैं पार्किंग की दो ऐसे बाउंड्री पर हैं जो वहाँ पर चैनल गेट लगा हुआ हैं और चैनल गेट के सामने एक ग्राउंड हैं जिसके साम --

यहाँ एक बिल्डिंग हैं बिल्डिंग के सामने बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ हैं यहाँ पर एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ हैं और दीवाल के पास कुछ पेड़ - पौधे लगे हुए हैं।

ये बहुत बड़ा ग्राउंड हैं जिसमे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और ग्राउंड की राइट साइड में बहुत सारे बिल्डिंग बनी हुई हैं।

और बिल्डिंग के राइट साइड में बहुत पेड़ लगे हुये हैं और सूरज की डूब रहे हैं।

सामने से एक रोड गई हुई हैं और उसके राइट साइड दीवाले बनी हुई हैं वाइट कलर की दीवाल हैं वहाँ पे इसमें पेड़ लगा हुआ हैं।